बहोत सारी गाड़ियां चलती हुई दिख रही है। यहाँ बहोत सुन्दर नजारा है।

यहाँ एक होटल है जहाँ पर मुझे कुछ गाड़ियां एवं बहुत सारे हरे --